यहां पर हर भगवान की ये एक फोटो है।

इस पर बहोत सुंदर डिजाइन बना हुआ है।

पीने के लिए चेयर टेबल भी लगे हुएं हैं यहां पर बहोत सारे कांच के कप गिलास भी पड़े हैं।

यहां पर खाना खाने के लिए चेयर और टेबल भी पड़े हैं।

यहां पर ब्ल्यू कलर की चेयर है।

यह एक बहोत बड़ी खुली जगह है।

यहां पर कई जने बस के ऊपर भी खड़े हैं।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्टेडियम नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में एक बहुत बड़ी--

यहां पर बहोत बड़े गेट पड़े है।

इस फोटो में एक पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है